बगीचे में लाल रंग के छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

ये बिल्डिंग नीला रंग का है।

लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे किताबें दिख रहे हैं।

ये दृश्य एक स्टैचू की है।

यहां पे बहुत सारे टेबल पर चेयर रखे हुए हैं।

पे बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमारे देश का नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है।

नदी में एक जहाज दिखाई दे रहा है।

कहीं से काला धूँआ निकल रहा है।

यहां पे बहुत सारे चेयर और टेबल रखे हुए हैं।

रुम के अन्दर बहोत सारे तस्वीर लगे हुए हैं।

एक बरा सा प्लेग्राउंड का तस्वीर है।

उनके अंदर में एक फैन लगा हुआ है।

ये एक दिन के समय का तस्वीर है।

यहां पे लोगों को ई योगा सिखाई जा रही है।

रूम के अंदर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

उनके अंदर बहुत सारे बलून लगे हुए हैं।

एक मंदिर के अंदर की तस्वीर है।

ये एक बैंक के अंदर की तस्वीर है।

बैंक के अंदर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे राखी रखे हुए हैं।

इस आदमी ने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

सामने एक सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है।

पे एक रस्ता भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर ए_सी लगा हुआ है।

ये गाड़ी सफेद रंग की है।

यहां पे दो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

चारों तरफ बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।